एक घरी है जो दीवार में टंगा हुआ है और खिड़की है जो पर्दा लगा हुआ है।

मिट्टी का रोड है एक आदमी है जो वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

वह ग्रिल का लगा हुआ है और एक छज्जा है जिसके नीचे एक कार रखा हुआ है।

यहां पर मुझे एक रेस्टोरेंट का रूम दिखाई दे रहा है जो ऊपर कुछ झालर से सजे हुए हैं।

और इसमें दरवाजा बना हुआ है जो डिजाइनदर दरवाजा बना हुआ है।

और दूतला घर जो बन रहा है पाठा है जो ठुकाया है।

गुलाबी रंग के हैं और ऊपर में हल्के काले सीमेंट रंग के दिखाई दे रहे हैं पतले-पतले से पेड़ है पहाड़ है जो दूर में दिखाई दे रहा है।

एक लड़का है जो आधा दिखाई दे रहा है और एक बैनर है जो एरियल का लिखा हुआ है।

वो थोड़े बड़े-बड़े से हैं और जो तना है वो भी हरा कलर का है।

और छोटे-छोटे गाछ है जो दिखाई दे रहे हैं टावर है।

वेज एंड नॉनवेज रेस्टोरेंट लिखा हुआ है और बाहर में खाने का बहुत सारा बैनर लगा हुआ है।

एक स्कूटी है एक बाइक है बहुत सारे लोग है जो बाहर खड़े हैं।

और बाहर में कुछ सब्जी का दुकान है ठेला है सायकल ले जो एक आदमी जा रहा है।

ऊपर में बत्तियों लिखा हुआ है और बहुत सा लाइटें है जो ऊपर जली हुई है।

यहां पर मुझे एक टेबल दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का--

और बहुत सारे पंखे हैं जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं दूर में पंखे हैं तीन चार और एक सामने पंखा है जो दिखाई दे रहा है.

एक गिटार है जो साइड में जो हल्के पीले रंग का है और डंटा इसका बुरा रंग का है।

आसमान है जो हल्का आसमानी है और नीचे ग्राउंड है छोटी-छोटी घास है जो उगे हुए हैं।

जो पीले रंग के लाल रंग के हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने हैं और पिलर है जो पानी के ऊपर है जो सफेद कलर का है जो मोटा है।

यहां पर मुझे बहुत बड़ा बिल्डिंग है जो दिखाई दे रहा है जो तीन फ्लोर है ऊपर दो टंकी है जो काले रंग का है।